यह सिलेम हॉल है यह सिल सिलेम हॉल काफी बड़ा है।

दिखाने के लिए आते हैं एवं जाँच कराने के लिए यहाँ पर बहुत से --

झूलने के सामान रखे गई है यह फील्ड के चारो ओर दीवारों से घेर दिया गया है ।